ऊपर पेड़ भी है रोड बिलकुल साफ है।

पीछे दीवाल पर काफी हरा भरा पेंट है।

ये एक चर्च है जहां पर कुछ लोग खड़े हुए है।

देखने में लग रहा है कि मौसम बिल्कुल साफ है।

और साथी ही यहां एक लड़का भी खड़ा हुआ है।

यह एक धाम की तस्वीर है जहां पर बीच में पानी भरा हुआ है।

कुछ कोनों पर स्टील की रेलिंगे भी लगी हुई है।

नहीं दिख रहा लाल रंग की गाड़ी दिख रहीं हैं।

बगल में एक चट्टान भी है सामने एक मैदान भी है।

सामने शीशा लगा हुआ है और यहां बिल्कुल भी भीड़ नही है।